काफ़ी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जाता है इस दुकान में। यह एक आदमी है जो हाथ में लिए हुए चाट है और इसमें उसका ऊपर प्याज डाले हैं। यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक में गुपचुप रखे हैं। गुपचुप भी मिल --

काजू पिस्ता बादाम भी रखे हुए हैं।

और एक थैला भी है जो टेबल पे रखे है और यहां पे एक खिड़की है जो दिखने में इस बैडरूम काफी अच्छा है और यहां पर जरा सा भी गन्दगी नहीं है।